इस द्रश्य मे रात के समय एक सड़क पे से एक व्यक्ति बाइक पे बैठ कर जाता हुआ नज़र आ रहा है ।

इस दृश्य में चारो तरफ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और बिच में बहुत सारे पेड़--

दृश्य में टाइल्स से बनी हुई एक सड़क दिखाई दे रही है और पार्क की हुई बहुत सी गाड़ियाँ है ।